यहां पर एक सफेद रंग का केबिन दिखाया है।

चार पहिए वाली गाड़ियां जा रही है।

यहां पर एक आदमी पीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

दवाइयां जो हैं वह शीशे की जा शीशे की अलमारी के अंदर रखी हुई हैं।

कुछ क्रीम और कुछ दवाइयां रखी हुई हैं।

कुछ आदमी एक्सेलरेटर से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं।

सीलिंग मे फर्श दिख रहा है एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है।

ये पूरा मार्शल आर्ट का रूम है पीछे मार्शल आर्ट का पोस्टर लगा हुआ है।

मार्शल आर्ट की पोजीशंस भी लगी हैं उसमें।

नदी के आसपास पौधे लगाए गए हैं और पुल के आसपास पेड़ पौ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर एक सिक्युरिटी गार्ड बाहर सीढ़ी पे खड़ा है।

लेटल वाली सीढ़ी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है।

यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर एक पिलर है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा है।

यहां पर एक घोड़ा वाला झूला दर्शाया गया है।

इसमें ये तीनों। श शेरवानी पहनी हुई है एक हरा रंग का शेरवानी पहना हुआ है।

आसपास देखा जाए तो बहुत ठे सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है।

और साथ ही कुछ छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं।

साथ ही बाल में पानी छिड़कने वाला स्प्रे है।

कुछ कुर्सियां सफेद और भूरे रंग की है तो कुछ कुर्सियां नीले और पीले रंग की दिख रही है।

यहां पर बहुत ढेर सारी लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर आई लव बी_पी_सी_एल भी लिखा है।

ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं।

पीछे बिल्डिंग है। अगल बगल घर भी है।

किले के अंदर जो है फूल और पौधे लगाए हुए हैं।